मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गेट नंबर दो लिखा है और कर्नल कॉन्वेंट --

एक दरवाजा नजर आ रहा हैं सफेद रंग का और आइस्क्रीम के बहोत सारे मुझे पिक्स नजर आ रही--

मुझे मीट मार्केट नजर आ रही है उसमें बहोत सारे लोग मीट काट रहे हैं।

मुझे एक हॉल नजर आ रहा है हॉल में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

मुझे एक सड़क नजर आ रही है सड़क के पास पार्क एक नजर आ रहा है।

मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है रास्ते के में पास मुझे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

पेट्रोल पंप के पास और दो मोटरसाइकल स्कूटी --